बाइक लगे हैं बहुत लोग हैं जो--

यहां प टी_वी के बड़ा बड़ा डब्बे रखे हुए हैं।

सामने एक टेबल टेबल के ऊपर बहुत सारे ग्लास बोतल रखे हुए हैं सामने एक आदमी--

हॉस्पिटल या सामने रिसेप्शनिस्ट के पास एक लड़की खड़ी है।

ये एक सामने बड़ा सा सड़क है सड़क के दोनों ओर काफी बड़े-बड़े --

उसके ऊपर कुछ डब्बे रखे हुए हैं तेल के डब्बे हैं।

सामने एक दुकान है कंप्यूटर सेल्फ सर्विस रिपेयर ।

ये एक सामने बर्गर का दुकान है।

कुछ कॉफी के डब्बे चॉकलेट के डब्बे रखे हुए हैं।

दो थी उम्म उम्म वाहन खड़े हैं।

ऑफिस है उसके बाहर एक कार खड़ी है।

सामने एक सा एक लड़का आ रहा है धीरे-धीरे जिस --